किया गया है और यहां पे बहुत सारा आदमी है और बहुत सारा गाड़ी भी रखा या रखा हुआ है आस-पास में पेड़-पौधा बोहोत अच्छा सा लगाया हुआ दोगो-तीनगो गार्ड भी खड़ा है।

और यहां पे बहुत सारा पेड़ पौधा है और आगे से एगो बकरी आ रहा है और पीछे में बहोत।

और एक मोटरसाइकिल में बैठा है और एक साइकिल में आ रहा है।

और ऊपर में बहोत अच्छा झंडा फहराया गर--

यहां पे एक किराना स्टोर है किराना स्टोर का वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग है और वाइट कलर का है और रेड कलर का पेंट किया हुआ है।

और बिल्डिंग का ऊपर में एक लाइट लगा के रखा है।